और जैसे कि सामने देखा जा सकता बहुत सारी लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं और ऊपर पीछे देखा जा सकता दो मोटरसाइकिल वगैरा और--

जैसे कि आप सामने देख सकते ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे बेंच पड़े हुए हैं।

जैसे की आप को बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है आसपास में पर्दे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे पीछे सजावट की गई दिखाई दे रही है।

कई लेडिस जेंट्स सारे इकट्ठे होके खड़े हुए हैं कई बाइकल पर खड़े हुए हैं किसी के हाथ में कोई पोस्टर वगैरा भी है एक दूर बहुत --

जैसे कि आप देख सकते हो सामने एक तारें नज तारो खम्भा नजर आ रहा है जिसपे बहोत सारे तारें है लटकते हुए दिखाई दे रही है।

और एक लेडिस है जैसे यहां पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि पूजा करते हुए सामने नज़र आ रहे हैं। बच्चे सारे खेलते हैं नज़र आ रहे हैं। लेडिस ने घूंघट बड़े-बड़े लिए हुए हैं और माथा टेकते नज़र आ रहे --

जैसे कि आप लोगों के सामने देख रहा है कि सामने मछली वगैरह दिखाई जा रही हैं।

दिखाई दे रहा है आस पास में काफी वगैरा दिखाई दे रहे है।

इधर नीचे कोई लाइटिंग वगैरह जग रही है जो दिखाई दे रही है।

एक शॉप दिखाई दे रहा है सामने एक तीन ए_सी लगे हुए दिखाई दे रहा है बाहर से एक टेंपो पड़ा हुआ--

जैसे कि आप देख सकते है दो व्यक्ति काम कर रहे दिखाई दे रहे है वे लोहे के पास खड़े हुए है उनके पास एक नीचे कपड़ा फेंका हुआ है।